यह तस्वीर देख के यह एक कंस्ट्रक्शन साइड का नजर आ रहा है।

अमूल के ढेर सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी दो पत्नी को लेके एच_डी_एफ_सी बैंक के बाहर गाड़ी खड़ा कर रहा है।

इस तस्वीर में हमें देखने को मिल पा रहा है।

पर कांच से ढका हुआ है जो काफी ग्रीन हाउस है ग्रीन हाउस कैसे प्रोड्यूस करता है।

यह ले के अपना मुंह पूछने जा रहा है।

यह लोग खूब मजे चहल पहल कर रहे हैं।

कड़ी और आलू आदि है और खीरा है सलाद के तौर पे इसे प्रत्येक इंडियनस् खाते हैं।

और मौज मस्ती करने --

यह तस्वीर देखने में हमें चिल प्रतीत होता है जो काफी सुनसान--

यहां पे बहोत सी चट्टाने और बीच में झरना गया हुआ है।

देखने से यहां इंटरनेशनल योग दिवस प्रतीत हो रहा है।

ये भी ट्यूशन पढ़ने थोड़ी देर में आ सकते है और गेट लॉक है।

देखने में हमें एक झरना प्रतीत हो रहा है जो कि विशाल--

यहाँ देखने में हमें बैंक ऑफ़ बड़ौदा का बैंक प्रतीत होता है जिसके बाहर --

कप ले के बैठा है जो लैपटॉप में--